जोकि एक फूल (पुष्प) पर बैठी है तथा यह चित्र बहुत ही खूबसूरत प्रतीत हो रहा है|

था अंदर कुछ वाहन भी खड़े हैं और बहोत बड़ी जगह है।